बोर्ड भी लाग रह इसके ऊपर और एक गेट दिखे हैं।

तो इस फोटो में हम देख सका हां शायद यो एक कोई कार ठीक करना वाला की बड़ा शो रूम सा दिखे है जिसमें--

और एक बारलो का गेट लग रहा है दो थमसे खड़े हैं एक बाइक खड़ा है जो अंदर जाना लग रहा है।

छोटे से बड़े हर तरह के मिरर लगे हुए हैं और सिनरियां एक से एक--

और लकड़ियों के ढांचे से कुछ तैयार किया गया है पीछे देख सकते हैं।

और ये तीन डंडे से खड़े कर रखें इनके ऊपर एक व्यक्ति से--

ओ टमाटोर के ढेर लगे हुए आलू है चुकंदर है काफी सब्जीया रखी हुई है यहां पे।

और ये ये बस स्टैंड के हैं सारे और ये कुर्सी वगैरह भी इसमें हैं।